दो लड़के काम कर रहे है नेट पाने सब कुछ रखा हुआ है उसी मे एक गेट बी है एक गेट है और एक और और गेट है एक खिड़की है एक बाल्टी राखी है दो बाइक खड़े है और बी बहुत सारा समान है कैलंडर है ।

यह एक ग्राउड़ है बहुत सारे बच्चे खेल रहे है मतलब पहाड़ भी दिख रहे है पर बहुत सरे पेड़ ईंट की बॉउंड्री उठी है।

और लाइट भी है और निचे टार्च भी लग रही है काले कलर की नीले कलर की पिले कलर की सब बाइक मिलेंगे एक्टिवा बी--

यह पे एक स्कुल है इसमें बहुत सारे बच्चे है कम्पटीशन कर रहे है बहुत बड़ा ग्राउंड है बहुत सारे पेड़ है बहुत ही सारा बादल है बहुत ही सारे बच्चे है कुछ बायक भी खड़ी है शायद--